मुकोट मोर पंख वह एक पैर पे खड़े हैं।

एक मशीन दिख रही है एक आदमी बड़ी सी मशीन है एक आदमी उस पे काम कर रहा है ब्लैक कलर की मशीन है पीछे वाइट कलर का शेड दिख रहा हैं।

ग्रीन और ग्रे कलर का है वाइट कलर का ऊपर थंब है।

इसमें एक गार्डन है उसमें चार-पांच कुर्सियां पड़ी हैं एक टेबल है कोई होटल का सीन लग रहा है पीछे वाइट कलर का--

बड़े बड़े पेड़ हैं दोनों साइड में और बीच में से झील जा रही है ऊपर आसमान नीला है।

बड़े सोफा है चम्मच दिख रहे हैं ब्राउन कलर का है पीछे एक--

ब्लू कलर का शेड है जिसमें दूसरी खुर्सिया हैं।

बंगलो के गार्डन का है तीन बड़े-बड़े--

पेड़ लगे हुए हैं उसमें छोटी-छोटी झाड़ियां हैं और नीचे छो छोटे छोटे गमले हैं वाइट कलर के उसमें ब्राउन कलर की मिट्टी लगी हुई हैं।

बच्चे लोग वाटर गेम खेलते हैं ऊपर से नीचे तक जाते हैं ऑरेंज कलर का है येलो कलर का है नीचे बहुत सारी जनता खड़ी है।

एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है एक आदमी जा रहा है सामने इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं कार हैं।

ग्रीन कलर ब्लू कलर बहुत सारी लाइटिंग हैं।

एक बहुत सुंदर बंगला है बहुत बड़ा है एक आगे एक बहुत बड़ा ट्री है और सामने --

बहुत बड़ा बीच है सब पेड़ लगे हुए हैं पीछे--

का पेंट बिखरा पड़ा है कार्पेट में--

यहां पे बहुत सारी मूर्तियां हैं जिनके मुंह ढके हुए हैं।

ये पहाड़ों का सीन है ब्लू कलर के पहाड़ है ऊपर वाइट कलर के--

बोहोत सारे हरे पिले झाड़ हैं छोटे छोटे।

ऊपर वाइट कलर के पहाड़ हैं साइड में ग्रीन कलर है पत्थर का शेड बने हुए हैं साइड में बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए हैं।

एक कैफे है वहां सब बड़े-बड़े डिस्क पड़े हुए हैं रिकॉर्डिंग के समान पड़े हैं सब --

एक मॉल का दुकान है वहां पे सब शैंपू बिस्किट चॉकलेट --

ये भी एक सलून है बाल दाढ़ी नाम है सलून का--

उस रेड कलर का डब्बा है ब्लू कलर का जूस का बॉक्स है उसका--

कहीं जा रहे हैं कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं डबल डेकर बस हैं नीचे बहुत सारे--